यह एक सरकारी जंगल है और जंगल के बीचों-बीच एक रास्ता भी है और पेड़ों पर लग रहा है लाल है सफेद है।

हरयाली का कड़ी हुई है और पत्ते भी हैं और अच्छा सा लग रहा है और बोहोत मोटा --

दो बोतल भी रखे हैं पानी की और दो कुर्सियां भी हैं। इधर एक बंदा भी खड़े हैं और दो उसके आगे हैं और बहोत सारे बंदे हैं इधर --

यह एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पे एक बस कड़ी हुई है।

यह एक रेलवे स्टेशन है और गट्टू भी लग रहा है और टाल भी लगा हुआ है |